ashok अपने farm से घर आता है और बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत करता है
उसकी पत्नी anita उसे देखती है और उसके हाथों और टाँगों के फफोलों पर ध्यान देती है
वह डर जाती है और कहती है कि उसके पति पर देवी ने ये she प्रकोप कर दिया
वह अपने बच्चों से शीघ्र ही घर के बाहर जाने को कहती है
माँ और बच्चे घर के बाहर आ जाते हैं और दरवाज़ा बहार से बंद कर देते हैं
इसी बीच उस गांव के अस्पताल की doctor उनके घर के passes से निकलती है और anita को नमस्ते कहती है
anita और उसके बच्चों के चेहरों पर चिंता के भाव देखकर वो anita से पूछती है क्या हुआ
anita अपने पति पर हुए देवी के प्रकोप के बारे में doctor को बताती है
doctor anita से कहती है कि वो उसके पति को देखना चाहती है
लेकिन anita मना करती है कहती है कि तुमको मेरे पति से नहीं मिलना चाहिए
doctor anita की उपेक्षा करते हुए घर के अंदर जाती है और फिर anita हिचकिचाते हुए उसके पीछे जाती है
doctor ashok की जाँच करती है और कहती है कि उसे chickenpox हुई हैं
लेकिन ashok और anita नहीं जानते कि chickenpox चेचक क्या होती हैं
वो प्रश्न पूर्वक doctor को देखते हैं
digital divide के spoken tutorial में आपका स्वागत है
यहाँ हम बात करेंगे chickenpox उसके लक्षणों कारणों और क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में
सबसे पहले देखते हैं chickenpox क्या है
chickenpox viral infection है जिसमें शरीर पर खुजली वाले फफोले हो जाते हैं
chickenpox के टीके रोग को रोकने के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं
जिन्हें chickenpox के टीके लगे हैं उनमे से कुछ लोगों को फिर भी chickenpox हो सकता है
लेकिन आम तौर पर उन्हें यह इतना ज़ोर नहीं पकड़ता है
सामान्यतः chickenpox मामूली बीमारी है और घातक नहीं है
लेकिन कभीकभी यह गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को अस्पताल जाने की ज़रुरत होती है अन्यथा वह मर भी सकता है
chickenpox निम्न को प्रभावित कर सकता है
* गर्भवती महिला
नवजात शिशु
किशोरों एवं वयस्कों और
कम प्रतिरोध क्षमता वाले लोगों को
अगर आपको एक बार chickenpox हो चुका हो तो सामान्यतः virus फिर से वापस नहीं आता है
अगर किसी को दूसरी बार chickenpox होता है तो उसे शिंगगल्ज़ कहते हैं
अब chickenpox के कुछ लक्षण देखते हैं
बुखार जो 2 दिनों तक रहता है
लाल warm और संक्रमित त्वचा
खुजली जो घरेलू उपचार से नहीं जा सकती
चकत्ते जो 2 सप्ताह तक रहते हैं
अब chickenpox का समयअंतराल और संक्रामकता देखते हैं
chickenpox के फफोले 35 दिनों में बनते हैं और 710 दिनों में पपड़ी आती है
यह होने के 12 दिनों में संक्रामक हो जाते हैं
यह तब तक संक्रामक रहते है जब तक सारे फफोलों पर पपड़ी न आ जाये
यह अत्यधिक संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकता है
अब हम chickenpox के कारणों को देखते हैं
आपको निम्न प्रकार chickenpox हो सकता है
* एक chickenpox के फफोले से निकले द्रव को छूने से या
* अगर चिकिन्पॉक्स से ग्रस्त व्यक्ति आपके सामने खाँसता या छींकता है
खतरा और ज़्याद होता है यदि
* आपको पहले कभी chickenpox नहीं हुआ हो और
* या तो आपने chickenpox के टीके नहीं लिए हों
अब देखते हैं कि जब हमें chickenpox होता है तो हमें क्या करना चाहिए
अपने doctor से परामर्श करके यह निश्चित करें कि यह चिकिन्पॉक्स है न कि मच्छर/कीट के काटने का निशान
हल्का भोजन लें घर का बना हुआ खाना ही बताया जाता है
शुरूआती कुछ दिनों तक प्रत्येक 3 से 4 घंटे में ठन्डे या गुनगुने पानी से नहाएं
नहाने के पानी में neem की पत्तियां डालें यह खुजली को कम करती हैं
नहाएं और शरीर को थपथपाकर पोछें
खूब पानी पियेंनारियल जौ या कुछ भी जो ठंडा करने वाला हो
संक्रमण फैलने से बचाने के लिए संक्रमित व्यक्ति के कपड़े अलग धोएं
अगर आपको chickenpox नहीं हुई है या टीका नहीं लगवाया है तो आपको टीका लगवा लेना चाहिए
अब देखते हैं कि chickenpox के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए
लाल खुजली वाले फफोले को न खुजायें
इससे जीवाणु संक्रमण और निशान हो सकते हैं
दूसरे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उनसे दूर रहें
यह इस tutorial के अंत में लता है चिकित्सकीय सहायता लेना हमेशा उपयोगी होता है
सुनने के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
इस tutorial के लिए animation arthi और drawings saurabh gadgil द्वारा किया गया है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद